बहुत सारे पंखे यहां इस दीवार पर दिखाए गए हैं छत के ऊपर बहुत सारे पंखे हैं चार पंखे पीछे हैं चार पंखे आगे हैं।

एक लोहे के व्हाइट कलर के गेट यहां पर लगे हुए हैं बिल्कुल खाली है यहां पर अग ग्राउंड सा दिख रहा है।

यहां पर बहुत ही बड़ा टायर रखा हुआ है यहां पे टाइलें बहुत अच्छी तरीके से--

बहुत सारी जनता यहां पर दिखाई--

मुंह करके यहां पर जब अपना फोटो खिंचवा रही है बहुत दे--

यहां पर देखने को मिला है संघ पूर्ण टेक इंडिया प्लॉट नम्बर इक्यावन सेक्टर पांच आई_एम_टी मानेसर गुडगांव का यह एड्रेस है।